बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के फटाको के टिकले दिखाए गए है यहाँ एनिसिस मल्टी शॉर्ट्स लिखा गया है।

घास दिखाई दे रहा है रात का समय है। लाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है हरे-भरे घास दिखाई दे रहे है पीली कलर का खंबा है।

इस तस्वीर में हमे एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं।